एक टेबल टेनिस पे चार लोग खेल रहे हैं हर तरफ लाइटे लगी हुई है पीछे की दीवाल पर--

एक ने ऑरेंज हरी नीली ब्लू साड़ी पेहनी है जो भरतनाट्यम कर रहे हैं।

जो गोल घेरा करके बैठे हुए है अपने पैर पकड़ के एक आसन करते दिखाई दे रहे हैं।